और नाम लिख रही है और--

और एक बाइक भी दिखाई दे रही है खंभे के पास में और दो घर दिखाई दे रहे हैं दो लड़के दिखाई दे रहे हैं और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जो की --

बेड भी दिख रही है और बेड के ऊपर गद्दा भी दिख रहा है बेड के चारपाई भी दिख रही है और टाइल्स --

लाइटिंग दिखाई दे रही है और एक बड़ा बलब दिखाई दे रहा है घड़ी भी दिखाई दे रही है और बहोत सामान भी दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही मस्त लग रहा है।

बड़ा सा रेस्टोरेंट नजर आ रहा है इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट बहोत ही बढ़िया है व्हाइट सीटें बनाई गई हैं और --

और लेडिस और आदमी दोनों आ रहे हैं और लड़कियां भी इधर बहुत सारी खड़ी हुई हैं और पानी के अंदर पता नहीं क्या किया जा रहा --

और यहां पर हमें एक लड़का नजर आ रहा है एक लड़का सो रहा है और एक लड़का फोन से बात कर रहा है।

और एक कृष्ण जी की फोटो भी है एक राधे जी की फोटो भी है और एक चाय कप की फोटो है।

कुछ घोड़े की फोटो भी है यहां पर बहुत सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है।

और मुझे ये पहाड़ ही लगता है इसके अंदर लड़का फसा हुआ है देख रहा है अंदर कुछ और पता नहीं क्या कर रहा है सामने एक --

बेचने वाला दिखाई दे रहा है और सामने एक अलमारी भी नजर आ रही है जो की बहोत ही सुंदर लग रही है सामने एक टी_वी भी लग रही है और --

इस चित्र के अंदर कंप्यूटर भी पड़ा दिखाई दे रहा है और एक घड़ी भी चलती हुई नजर आ रही है और कुछ केन वगैरहा सब कुछ दिख रहा है जो भी नज़र आ रहा है।

ड्रम भी नजर आ रही है और कुछ पाइप भी नजर आ रही हैं।

टी शर्ट पहने हुए नजर आए हैं और और सारे आदमी इकट्ठे हो रखे हैं टी_वी बहोत ही बड़ा है पेट्रोल पंप के अंदर तेल भरवा रहे हैं अपनी बाइक वाइक और यहां पर --